जिनमे से कुछ के ऊपर सिंगे भी है।

यहाँ पर बहोत सारे रंग-बिरंगी पक्षी है।

पीछे की ओर एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें से दो सफ़ेद रंग के हैं और एक पीले रंग का है।

जिसमें अभी दो दरवाजे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा बिग मार्ट है।

पीछे की ओर कुछ ऑफिस जैसा है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

और एक आदमी है आगे की ओर एक पीछे की ओर आदमी भी खड़ा है।